लोग यहाँ नीचे बैठे हैं जिसमें काफी सारी महिलाए हैं। यह एक खुला मैदान सा दिख रहा है जो मंदिर के ठीक सामने है।

देखने में पता चलता है कि यहॉँ पर घर में प्रयोग में आने वाली जरूरत का सभी सामान रखा है। शैम्पू के पाउच से लेकर बिस्कुट के पाउच तक साबुन तेल निरमा घड़ी आदि हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है।

सीता और राम की तस्वीर दिख रही है। जिसके चारो और ये लोग दिया लगा रहें हैं। यहां पे महिलाए खड़ी है जिन्होंने सफेद साड़ी पेहनी है और सभी ने सफेद मास्क लगाया हुआ है।